दो व्हाइट कलर का स्टैन बना हुआ है।

व्हाईट कलर की वॉल है।

और इमेज में बादल है ब्लू कलर का--

बहोत सारे पत्थर हैं नीचे में पत्थर और ईंट के टुकड़े हैं।

और इसमें एक कार है ब्लैक कलर की और ओ--

अ ब्राउन ब्राउन कलर का फ्लोर है।

और एक खिड़की नजर आ रही है मेरे को एंड यहां पर टाटा का कुछ रखा है।

रैक रैक जैसे कुछ बना हुआ हैं ऊपर में ब्राउन ब्राउन कलर के मशीन्स हैं।

एंड ऊपर में खुला आसमान नजर-- -

ग्रीन ग्रीन ग्रीन ग्रीन घास है बहुत सारे एंड बहोत सारी ट्रिज है यहां पे --

मैं एक इमेज को देख रही हूं और इस इमेज में--